यहाँ घास हरी भूरी दिखाई दे रही है। एक लेडीज सूट पहने हुए छाता लगाए खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यह बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे --

बीच मे यहाँ तीन लेडीसे है ये जेंटसों है यहाँ खड़ा हुआ दिखाई दे रहो है जो ब्लू कलर का कुरता पहने हुए दिखाई दे रहो है यहाँ नइव-नइव साड़ी पहनी हुई --

यहाँ एक चैनल गेट है ब्लैक कलर को दिखाई दे रहो जिके अंदर एक आदमी खड़ा दिखाई और बाहर एक साइड -- एक लेडीज एक जेंट्स वो दिखाई दे रहो है एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई --

ये यहाँ सिंगल मंजिल बिल्डिंग ऊपर‌ है रेलिंग ‌है स्टील की लगी दिखाई दे रही है सामने अच्छो‌ सो पड़ो दिखाई दे रहो --

फ्रॉक सूट पहने हुए प्लाजो नीचे एक डांस करते हुए स्टेज पर दिखाई दे रही है।

और ये क्या आदमी ही झाड़ू लगाते हुए हाथ में झाड़ू रखा हुए नूहरा के झाड़ू लगते हुए दिखाई दे रहौ है। दीवाले रेड कलर की दिखाई देर रही हैं। यहाँ जलियाँ दिखाई दे रही --

यहाँ अलग-अलग हिसाब से अपने-अपने हिसाब से डांस कर रही हैं । यहां चमचमाति हुई लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है। ऐं कछु लेहंगा‌ से पहने है कछु फ्राक सूट का चड्डा --

इस आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई जैसी दिखाई दे रहीं हैं फैक्चर हो गयीं हैं पट्टी ही बंधी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहाँ मट्टी है पड़ी हुई बोहोत सारी औंधी नीची सी दिखाई दे रही है बोहोत बड़ी है यहाँ मशीन लगी हुई दिखाई दे रही--